मम मम बहुत ही साईकिल है मम लाइट है।

एक बिल्डिंग था बिल्डिंग के बाहर उम उम सामने बहुत सारा बाइक है ये साईकिल है।

पत्थर निचे छोटा -छोटा घास है बहुत छोटा -छोटा पत्थर दिखाई दे रहे है।

इस अड्डा पे सड़क के साइड में ये ये एक उम उम जी एक उम उम निल हुलूत का --

ये ये एक सड़क है सड़क के सामने बहुत सारा पेड़ है ये ये अ अ बहुत सारा क--